बड़का बड़का पौधा वौधा सब हे ऐसिल जाने हमें अउर ये जगह का आदमी मन हे मूर्खे बखरा सिंगे जानिल अउर ये जगह का लंदर फंदर बदरी वदरी सब है गाड़ी वाड़ी सब हैऐसे के जानिन--

देख ते की ये जगह झूमर मन हे मस्त मस्त--

ए जगह बड़का बड़का बिल्डिंग है और ए जगह पौधा औधा सब लगल हे कूड़े दान मनेया हे सब चीज़ हे ये लगे एक लाइट मन हे खिड़की उडकी सब लगल है सफेदा नीला में और ए जगिहे रास्ता उस्ता सब हे।

बै की खिलौना हे की जानत हुई कक ह बाकी मस्त-मस्त खिलौना मन हे की जानन का कहे की टावर मने मस्त-मस्त--

ये आइसक्रीम ल दुकान जेसे की जानथी हमे का का ही की बाकी मस्त--मस्त पौधा वोंधा सब हे दुकान वूकान सब हे इसे जानथी।